दुकान के शटल पर लिखे हुए है जी_के टी_एम_टी ।

शायद टेबुल पर दो और भी गन रखे हुए हैं।

दीवार पर एक तस्वीर भी लगाई हुई है जिसमें एक औरत और एक मर्द पूजा जैसी कर रहे हैं।

उसकी दूसरी तरफ से एक और छोटा मंदिर है।

एक शीशे का टेबल है जिसपर बहुत सारे सोने की चीजे रखी हुई है।

फर्श पर छोटे छोटे कालीन बिछाए हुए हैं।

पेट्रोल पंप के साइड में एक गाड़ी है बड़ी वाली गाड़ी।

पेट्रोल पंप में एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

दीवार पर एक घड़ी रखी हुई है। घड़ी के नीचे एक चार्ट लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में एक किताबों की दुकानें लग रही है जहां पर एक अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट भी लगाया हुआ है।

और सीढ़ियों के साथ बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है।

दरिया के किनारों पर दूर से बोहोत सारे पेड़ और छोटे छोटे मकान नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक लोहे का बड़ा गेट है गेट के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बाग नजर आ रहा है।

गेट पर एक चार्ट जैसा भी लगाया हुआ है जिस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।

मैदान का एक हिस्सा छोटी छोटी लड़कियों से भरा गया है खड़ी लकड़िया है।

इमारत के ऊपर एक रोशनी का बल्ब भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में एक जगह है जो जाली से बंद की हुई है।

इस तस्वीर में तीन लोग हैं जो बजरी और सीमेंट का काम कर रहे हैं।

साइड में एक बोरी रखी हुई है और एक बाटि भी रखी हुई है।

ओ पलेट पर तीन चमचे भी रखे हुए है।

मंदिर के बराबर सामने दोनों तरफ से दो शेरों की मूर्तियां भी रखी हुई है।

जिसमें सफेद और लाल रंग किया हुआ है।

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ी जगह है जहां पर बीच में पत्थरों का एक ढांचा बनाया हुआ है।